सामान दिखाई दे रहा है इस यह एक दुकान है जिसमें हर प्रकार का सामान बेचने के लिए रखा गया है लाइट्स जलाई गई है यह फोटो कमरे के अन्दर ली गई है।

इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं यह फोटो दिन के टाइम ली गई है इसमें जानवर दिखाई दे रहे हैं।

तीन दो लेडीज हैं बाकी जेंट्स हैं और इस के पीछे दीवार में कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं इनके पीछे कुर्सियां टेबल भी--

बहुत सारे लेडिस सूट रखे गए हैं पीछे शेल्फे बनाई गई है।

इसमें एक दुकान के आगे चार बच्चों की फोटो ली गई है और पीछे एक दुकान की फोटो आई है जिसमें अनमोल--

यह एक दु कमरे के अंदर दुकान की फोटो ली गई हैं इसमें लोहे की स्टैंडों में शेल्फ बनाई गई हैं और उसमें बहोत सारे प्लास्टिक --

इसमें एक होटल की फोटो ली गई है होटल के आगे बहुत सारे लोग हैं और अंदर जा र कुछ लोग इसमें अंदर जा रहे हैं और इसमें--

इसमें एक फ्रूट वाला भी फ्रूट बेच रहा है और--

बाहर एक अंदर जाने के लिए लोहे का गेट लगाया गया है और--

यह फोटो एक समुद्र की ली गई है। इसमें समुद्र के चारों ओर बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हैं और--

पोस्टर लगाया गया है जिसमें फूड वेस्ट डस्टबिन लिखा गया है और इसके साथ एक लकड़ी का गोल साटा रखा गया है जिसके साथ एक--

गाड़ी साइड में खड़ी की गई है और पीछे जंगल दिखाई दे रही हैं और सामने एक--